ये यहां बहुत इसमें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ--

और इसके पीछे एक लड़का और है जिसने पीली कलर की--

हर जगह व्हाइट व्हाइट कलर के बादल है और इसमें बहोत मंदिर का कलर व्हाइट और ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर में--

एक बहुत बड़ी दुकान है जिसमें की खाने का सामान रखा हुआ है सामने बहुत सारे डिब्बे हैं जिसमें की बहुत सारी टोपियां तरह. तरह की टोपियां हैं।

ट्रक लगे हुए हैं और इसमें एक हरे एक कलर की बिल्डिंग बनी हुई है और सामने बहोत अच्छा व्यू आ रहा है क्योंकि--

एक बहुत बड़ी दुकान है जिसमें कि प्लास्टिक का सामान रखा हुआ है थैलियां--

और बोर्ड में कुछ बहुत लिखा हुआ हैं।

टीन का कलर काले कलर का है और इसके सा ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी है और उसके वहां पे बहोत बड़ी--

काला और बहोत सारे कलर के हैं सामने एक ऐ_सी भी लगा हुआ है ऊपर एक पंखा भी लगा हुआ है।

नीला व्हाइट कलर का है एक और स्कूटरी है उसके पास उसका कलर --